हॉल की दीवार पर व्हाइट टाइल्स लगी हुई है।

दुकान में सिल्वर कलर का शटर भी है।

इसकी दीवार पर एक लाइन का बोर्ड भी बना हुआ है।

अंदर पानी का जार भी रखा हुआ है।

यहां बहुत सारा गिट्टियों का घेर भी रखा हुआ है।

गेट के आगे भी बहोत बड़े बड़े पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

पेट्रोल पंप के चारो तरफ बाउंड्री किया हुआ है बाउंड्री का कलर व्हाइट है।

एक व्यक्ति के हाथ मे ग्रीन कलर का डब्बा है और उसमें कुछ पानी रखा हुआ है।

रंग बिरंगे वाले बल्ब भी जल रहे हैं।

उसमे बहोत सारे वस्तुएँ रखे गये हैं डिब्बे बालटी और भीं बहुत सारे वस्तुएँ रखे गये हैं।